यह एक यहा पे ये शॉप है बहुत बड़ी शॉप है इसका काउन्टर बना हुआ है काउन्टर के नीचे भी कांच लगे हुए है।

एक वेलकम टू म बायोडाइवर्सिटी पार्क मधुपुर पे जमुई फॉरेस्ट लिखा हुआ है एक लकड़ी के ऊपर यहाँ पर एक पार्क बना हुआ है।

ये एक माउंटेन बना हुआ है माउंटेन में यहाँं पे आस पास में पेड़ पौधे बने हुए हैं यहाँं पे एक अ अ पे एक पेड़ पौधे बने हुए हैं और एक--

सामने बहुत ज्यादा पिंक येलो-येलो कलर के ग्रीन-ग्रीन कलर के यहाँ पर आमने एक सेनिप्लेक्स के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जैसे उनको यहाँ पे---

बहुत बड़ी नदी बनी हुई है नदी के सामने एक मस्जिद बनी हुई है मस्जिद के ऊपर एक बहुत बड़े मीनारे बना हुआ है।